एक लड़का भी चेयर के पास एक लड़का खड़ा है जिसने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है यहां पर--

एक गमले में हैं जिसमें छोटे छोटे से पौधे वगैरा लगे हुए हैं।

इनके अंदर एक हल्के-हल्के से पत्ते भी मौजूद हैं ये बहुत ही खूबसूरत--

यूनिफॉर्म पहनी है और पेट्रोल पंप पर मशीनें लगी होती हैं जहां से--

पायलट भी पायलट भी खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी है और वो सारे इस एयरप्लेन को देख रहे हैं।

ब्रेसलेट पहने हैं और यहां पर पार्क में बहुत ज्यादा दरख्त और घास वगैरह मौजूद है।

रिसेप्शन पर बहुत बड़ा वाज भी पड़ा जिसमें वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं।